और गुलाबीरेशमी कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहां बहोत सारे शेल्फ हैं।

और व्यक्तियों के पास पांच छे बाइक भी रखी हुयी है।

यहां पे लाल और काले रंग की एक वायर लटक रही है।

मछलियों का रंग काला और वाइट है।

यह किसी स्कूल का फोटो है।

स्तंभ के पीछे एक बहुत बरा वृक्ष है।

हॉल में चार सोफे लगे हुए हैं।

एक वाटर पेटर भी दिखाई दे रहा है।

इसका नाम है नायक बजाज--

और यहां लेफ्ट साइड में कोने में राम नाम लिखा हुआ है।

यहां अगल बगल में बहुत सारी झाड़ियां हैं।

यहां में बहुत सारे बांस के खूंटे भी गाड़े गए हैं।

चार आदमी भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक जगह ऑफिस आई_एच_डी_एम सेंटर लिखा हुआ है।

दीवार पर एक जगह एकेडमिक अल्ट्रासाउंड भी कहा हुआ है एरो के साथ।

इन सब लड़कों में से एक ने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई है।

एक ने लाल रंग की सर्ट पहनी हुई है।

पीछे एक घर भी है।

यह एक रेस्टोरेंट हैं।

यह एक मच्छी मार्केट का फोटो है।

यहां गेट हरे रंग का है।

यह देवघर मुंसीपार्टी कॉर्पोरेशन का ऑफिस है।

उसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू इंट्रोडक्शंस ।

बाउंड्री के उस पार बहुत सारे लंबे से वृक्ष लगे हुए हैं।

यहां एंट्री गेट पर दो गमले रखे हुए हैं।

एक बच्चे ने काले रंग का ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ है।